एक लैब जांच है कमरे में कुछ आदमी है जिनमे कि तीन टेबल के उस साइड बैठे हुए है जो एक औरत एंट्री कर रही है।

है उसमे एक ग्राहक लोवर काला लोवर और नीली टी-शर्ट पेहेन कर एक आदमी से कुछ खरीद रहा है।

दुकान दिखाई दे रही है जो कि फटी हुई पन्नियों से बनी हुई है उसी --

ऊपर बेल चढ़ रही है बहुत सारे हरे पत्तों के सामने घास लगी हुई है जो की फसल पक चुकी है और घास के जैसे दिखाई दे रही --

यहाँ किसानों का मेला लगा हुआ है जहाँ की बहुत सुंदर-सुंदर रंगोलियाँ बनी हुई --